यहां एक रोड पे बस खड़ी हुई है ग्रीन कलर की।

और एक कुर्सी भी रखी हुई है और एक एक टेबिल भी रखी हुई--

और एक पोस्टर लगा हुआ है जो व्यक्ति टायर को ऊपर उठा रहा है।

दीवाल पे एक घड़ी भी लगी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे शीशे भी दिखाई दे रहे हैं।

और नीचे की ओर नीले और लाल कलर की मैट बिछी हुई है ऊपर पंखा भी लग रहा है।

यह एक रोड के पास एक कार खड़ी है।

और बराबर में एक टंकी भी दिखाई दे रही है और एक सिंक भी लगी हुई है।

यह एक स्टैंड है जहाँ पर बोहोत सारी कारें और ऑटो खड़े हुए हैं और कुछ महिला व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

झरनें से बहुत सारा पानी आ रहा है।

और इसके बराबर में एक पेड़ पौधा भी लगे हुए है।